यह तस्वीर हमें एक रोड की दिखाई दे रही है।

पाइप शॉप में बहुत सारी ब्लैक कलर की पाइपें पड़ी हुई हैं।

यह तस्वीर हमें चेकिंग रूम की दिखाई दे रही है।

दुकान में बहुत अलग अलग तरह के थार दिखाई दे रहे हैं।

यह तस्वीर में हमें एक गाय दिखाई दे रही है।

यह तस्वीर हमें एक शादी की दिखाई दे रही है।

शादी में बहुत सारे मेज कुर्सियां लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।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

और साइड में एक बड़ा पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

और एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा हैं।

दुकान में बहुत अलग-अलग तरह की पतंगें दिखाई दे रही है।

यह तस्वीर हमें एक हॉस्पिटल की दिखाई दे रही है।

येह तस्वीर हमें एक बैग शॉप --

इस तस्वीर में हमें बहुत सारे मजदूर--